साइड एक रेलिंग लगी हुई है नीचे घास बिछी हुई है।

यहां पर बहुत सारी साइकिल खड़ी हुई है और एक लड़का साइकिल पर बैठ कर --

दो तीन लोग खड़े हुए हैं सामने से एक ट्रेन आ रही है।

जो सड़क पर खड़ा हुआ है।

उन पर तकिये रखे हुए हैं खिड़की में कूलर लगा हुआ है।

जिसमें एक साइड डबल बेड लगा हुआ है एक साइड सिंगल बेड लगा हुआ है।

इसमें एक लड़का टे कुर्सी पर बैठकर अपनी फोटो खेंच रहा है।

येह पिक्चर एक कैफे की है यहां पर बहोत सारी--

यहां पर अलग अलग कलर के फूल रखे हुए हैं साइड में कुछ मालाएं रखी हुई है।